मेरे प्यारे देशवासियो आज फिर एक बार मन की बात के इस कार्यक्रम में आप सबके साथ रूबरू होने का सौभाग्य मिला है
अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु में एक ऐतिहासिक क्रिकेट मैच हुआ
आप लोग भलीभांति समझ गए होंगे कि मैं भारत और अफगानिस्तान के टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ
यह अफगानिस्तान का पहला अन्तर्राष्ट्रीय मैच था और यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि अफगानिस्तान का यह ऐतिहासिक मैच भारत के साथ था
इस मैच में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और दूसरे अफगानिस्तान के ही एक बॉलर राशिद खान ने तो इस वर्ष आईपीएल में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और मुझे याद है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्रीमान अशरफ़ गनी ने मुझे टैग कर अपने ट्विटर पर लिखा था अफगानिस्तानके लोगों को अपने हीरो राशिद खान पर अत्यंत गर्व है मैं हमारे भारतीय मित्रों का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने के लिए एक प्लैटफार्म प्रदान किया है
अफगानिस्तान में जो श्रेष्ठ है राशिद उसका प्रतिनिधित्व करता है
वह क्रिकेट की दुनिया का एसेट है और इसके साथसाथ उन्होंने थोड़ा मजाकिये अंदाज़ में ये भी लिखा नहीं हम उसे किसी को देने वाले नहीं हैं
यह मैच हम सभी के लिए एक यादगार रहेगा
खैर ये पहला मैच था इसलिए याद रहना तो बहुत स्वाभाविक है लेकिन मुझे ये मैच किसी एक विशेष कारण से याद रहेगा
भारतीय टीम ने कुछ ऐसा कियाजो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है
भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेते समय एक विजेता टीम क्या कर सकती है उन्होंने क्या कियाभारतीय टीम ने ट्रॉफी लेते समय अफगानिस्तान की टीम जो कि पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय मैच खेल रही थीअफगानिस्तान की टीम को आमंत्रित किया और दोनों टीमों ने साथ में फोटो ली
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है इस एक घटना से हम अनुभव कर सकते हैं
खेल समाज को एकजुट करने और हमारे युवाओं का जो कौशल हैउनमें जो प्रतिभा है उसे खोज निकालने का एक बेहरतीन तरीक़ा है
भारत और अफगानिस्तान दोनों टीमों को मेरी शुभकामनाएँ हैं
मुझे उम्मीद है हम आगे भी इसी तरह एकदूसरे के साथ पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलेंगे भी खिलेंगे भी
मेरे प्यारे देशवासियो इस 21 जून को चौथे योग दिवस पर एक अलग ही नज़ारा था
पूरी दुनिया एकजुट नज़र आयी
विश्वभर में लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ योगाभ्यास किया
ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लामेंट होNew यॉर्क स्थित संयुक्तराष्ट्र का मुख्यालय हो जापानी नौसेना के लड़ाकू जहाज़ हों सभी जगह लोग योग करते नज़र आए
सऊदी अरब में पहली बार योग का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और मुझे बताया गया है कि बहुत सारे आसनों का डेमोंस्ट्रेशन तो महिलाओं ने किया
लद्दाख की ऊँची बर्फीली चोटियों पर भारत और चीन के सैनिकों ने एकसाथ मिलकर के योगाभ्यास किया
योग सभी सीमाओं को तोड़करजोड़ने का काम करता है
सैकड़ों देशों के हजारों उत्साही लोगों ने जाति धर्म क्षेत्र रंग या लिंग हर प्रकार के भेद से परे जाकर इस अवसर को एक बहुत बड़ा उत्सव बना दिया
यदि दुनिया भर के लोग इतने उत्साहित होकर योग दिवस के कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे तो भारत में इसका उत्साह अनेक गुना क्यों नहीं होगा
देश को गर्व होता है जब सवासौ करोड़ लोग देखते हैं कि हमारे देश के सुरक्षा बल के जवान जलथल और नभ तीनों जगह योग का अभ्यास किया
कुछ वीर सैनिकों ने जहाँ पनडुब्बी में योग किया वहीं कुछ सैनिकों ने सियाचीन के बर्फीले पहाड़ों पर योगाभ्यास किया
वायुसेना के हमारे योद्धाओं ने तो बीच आसमान में धरती से 15 हज़ार फुट की ऊंचाई पर योगासन करके सबको स्तब्ध कर दिया
देखने वाला नज़ारा यह था कि उन्होंने हवा में तैरते हुए किया न कि हवाई जहाज़ में बैठकर के
स्कूल हो कॉलेज हो दफ्तर हो पार्क हो ऊँची ईमारत हो या खेल का मैदान हो सभी जगह योगाभ्यास हुआ
अहमदाबाद का एक दृश्य तो दिल को छू लेने वाला था
वहाँ पर लगभग 750 दिव्यांग भाईबहनों ने एक स्थान पर एक साथ इकट्ठे योगाभ्यास करके विश्व कीर्तिमान बना डाला
योग ने जाति पंथ और भूगोल से परे जाकर विश्व भर के लोगों को एकजुट होकर करने का काम किया है
वसुधैव कुटुम्बकम् के जिस भाव को हम सदियों से जीते आये हैं
हमारे ऋषि मुनि संत जिस पर हमेशा जोर देते हैं योग ने उसे सही मायने में सिद्ध करके दिखाया है
मैं मानता हूँ कि आज योग एक वेलनेस रेवोल्यूशन का काम कर रहा है
मैं आशा करता हूँ कि योग से वेलनेस की जो एक मुहीम चली है वो आगे बढ़ेगी
अधिक से अधिक लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनायेंगे
मेरे प्यारे देशवासियोMyGov और NarendraModiApp पर कई लोगों ने मुझे लिखा है कि मैं इस बार की मन की बात में 1 जुलाई को आने वाले doctorएस डे के बारे में बात करूँ सही बात है
हम मुसीबत के समय ही डॉक्टर को याद करते हैं लेकिन यह एक ऐसा दिन है जब देश हमारे डॉक्टर्स की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है और समाज के प्रति उनकी सेवा और समर्पण के लिए उन्हें बहुतबहुत धन्यवाद देता है
हम वो लोग हैंजो स्वाभवतः माँ को भगवान के रूप में पूजते हैं भगवान के बराबर मानते हैं क्योंकि माँ हमें जीवन देती है माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है
डॉक्टर की भूमिका केवल बीमारियों का इलाज़ करने तक सीमित नहीं है
अक्सर डॉक्टर परिवार के मित्र की तरह होते हैं
हमारे लाइफ स्टाइल गाइड्स हैं थे नोट ओनली क्यूर बट अलसो heal
आज डॉक्टर के पास मेडिकल एक्सपर्टाइज तो होती ही हैसाथ ही उनके पास जनरल लाइफ स्टाइल ट्रेंड्स के बारे में उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इन सबके बारे में गहरा अनुभव होता है
भारतीय डॉक्टरों ने अपनी क्षमता और कौशल से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनायी है
मेडिकल प्रोफेशन में महारतhardworking के साथसाथ हमारे डॉक्टर कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जाने जाते हैं
मन की बात के माध्यम से मैं सभी देशवासियों की तरफ़ से हमारे सभी डॉक्टर साथियों को आगामी 1 जुलाई को आने वाले doctorएस डे की ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो हम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनका इस भारत भूमि में जन्म हुआ है
भारत का एक ऐसा समृद्ध इतिहास रहा है जब कोई ऐसा महीना नहीं है कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें कोईनकोई ऐतिहासिक घटना न घटी हो
देखें तो भारत में हर जगह की अपनी एक विरासत है
वहाँ से जुड़ा कोई संत है कोई महापुरुष है कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है सभी का अपनाअपना योगदान है अपना महात्म्य है
प्रधानमंत्री जी नमस्कार मैं डॉ सुरेन्द्र मिश्र बोल रहा हूँ
हमें ज्ञात हुआ है कि 28 जून को आप मगहर आ रहे हैं
मैं मगहर के ही बगल में एक छोटे से गाँव टडवा जो गोरखपुर में है वहाँ का रहने वाला हूँ
मगहरकबीर की समाधि स्थली है और कबीर को लोग यहाँ पर सामाजिक समरसता के लिए याद रखते हैं और कबीर के विचारों पर हर स्तर पर चर्चा होती है
आपकी कार्ययोजना से इस दिशा में समाज के सभी स्तरों पर काफ़ी प्रभाव होगा
आपसे प्रार्थना है कि कृपया भारत सरकार की जो कार्ययोजना है उसके बारे में अवगत करवाने की कृपा करें
आपके फ़ोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ये सही है कि मैं 28 तारीख़ को मगहर आ रहा हूँ और वैसे भी जब मैं गुजरात में था गुजरात का कबीरवड तो आप भलीभांति जानते हैं
जब मैं वहाँ काम करता था तो मैंने एक संत कबीर की परंपरा से जुड़े लोगों का एक बड़ा एक राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया था
आप लोग जानते हैं कबीरदास जी मगहर क्यों गए थे उस समय एक धारणा थी कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वह स्वर्ग नहीं जाता
इसके उलट काशी में जो शरीर त्याग करता है वो स्वर्ग जाता है
मगहर को अपवित्र माना जाता था लेकिन संत कबीरदास इस पर विश्वास नहीं करते थे
अपने समय की ऐसी ही कुरीतियाँ और अंधविश्वासों को उन्होंने तोड़ने का काम किया और इसलिए वे मगहर गए और वहीँ उन्होंने समाधि ली
संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता शांति और भाईचारे पर बल दिया
यही उनके आदर्श थे
उनकी रचनाओं में हमें यही आदर्श देखने को मिलते हैं और आज के युग में भी वे उतने ही प्रेरक है
उनका एक दोहा है
कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर
जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर
मतलब सच्चा पीर संत वही है जो दूसरो की पीड़ा को जानता और समझता है जो दूसरे के दुःख को नहीं जानते वे निष्ठुर हैं
कबीरदास जी ने सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया था
वे अपने समय से बहुत आगे सोचते थे
उस समय जब विश्व में अवनति और संघर्ष का दौर चल रहा था उन्होंने शांति और सद्भाव का सन्देश दिया और लोकमानस को एकजुट करके मतभेदों को दूर करने का काम किया
जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय
यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोय
एक अन्य दोहे में कबीर लिखते हैं
जहां दया तहं धर्म है जहां लोभ तहं पाप
जहां क्रोध तहं काल है जहां क्षमा तहं आप
जाति न पूछो साधू की पूछ लीजिये ज्ञान
और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठ कर लोगों को ज्ञान के आधार पर मानें उनका सम्मान करें उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है
अभी जब हम संत कबीरदास जी के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे उनका एक दोहा याद आता है
जिसमें वो कहते हैं
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पांय
बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताय
ऐसी होती है ये गुरु की महानता और ऐसे ही एक गुरु हैं जगतगुरु गुरु नानक देव
जिन्होंने कोटिकोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया सदियों से प्रेरणा देते रहें
गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने और पूरे मानवजाति को एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी
गुरु नानक देव कहते थे गरीबों और जरुरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है
वे जहाँ भी गए उन्होंने समाज की भलाई के लिए कई पहल की
सामाजिक भेदभाव से मुक्त रसोई की व्यवस्था जहाँ हर जाति पंथ धर्म या सम्प्रदाय का व्यक्ति आकर खाना खा सकता था
गुरु नानक देव ने ही तो इस लंगर व्यवस्था की शुरुआत की
2019 में गुरु नानक देव जी का 550वाँ प्रकाश पर्व मनाया जाएगा
मैं चाहता हूँ हम सब लोग उत्साह और उमंग के साथ इससे जुड़े
आप लोगो से भी मेरा आग्रह गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पूरे समाज में और विश्वभर में इसे कैसे मनाया जाए नएनए आईडीईएएस क्या हों नएनए सुझाव क्या हों नईनई कल्पनाएँ क्या हों उस पर हम सोचें तैयारियाँ करें और बड़े गौरव के साथ उसको हम सब इस प्रकाश पर्व को प्रेरणा पर्व भी बनाएं
मेरे प्यारे देशवासियो भारत की आज़ादी का संघर्ष बहुत लम्बा है बहुत व्यापक है बहुत गहरा है अनगिनत शाहदतों से भरा हुआ है
पंजाब से जुड़ा एक और इतिहास है
2019 में जलियांवाला बाग़ की उस भयावह घटना के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था
13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन कौन भूल सकता है जब पॉवर का दुरुपयोग करते हुए क्रूरता की सारी हदें पारकर निर्दोष निहत्थे और मासूम लोगों पर गोलियाँ चलाई गयी थी
इस घटना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं
इसे हम कैसे स्मरण करें हम सब इस पर सोच सकते हैं लेकिन इस घटना ने जो अमर सन्देश दिया उसे हम हमेशा याद रखें
ये हिंसा और क्रूरता से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता
जीत हमेशा शांति और अहिंसा की होती है त्याग और बलिदान की होती है
मेरे प्यारे देशवासियो दिल्ली के रोहिणी के श्रीमान रमण कुमार ने नरेंद्र मोदी मोबाइल अप्प पर लिखा है कि आने वाली 6 जुलाई को डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है और वे चाहते हैं इस कार्यक्रम में डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में देशवासियों से बात करूँ
रमण जी सबसे पहले तो आपको बहुतबहुत धन्यवाद
भारत के इतिहास में आपकी रूचि देखकर काफ़ी अच्छा लगा
आप जानते हैं कल ही डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि थी 23 जून को
डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कई क्षेत्रों से जुड़े रहे लेकिन जो क्षेत्र उनके सबसे करीब रहे वे थे एड्यूकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और पार्लमेंट्री affairsबहुत कम लोगों को पता होगा कि वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के वाइस चांसेलर थे
जब वे वाइस चांसेलर बने थे तब उनकी उम्र मात्र 33 वर्ष थी
बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि 1937 में डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निमंत्रण पर श्री गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन को बांग्ला भाषा में संबोधित किया था
यह पहला अवसर था जब अंग्रेजों की सल्तनत थी और कोलकाता विश्वविद्यालय में किसी ने बांग्ला भाषा में कन्वोकेशन को संबोधित किया था
1947 से 1950 तक डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले उद्योग मंत्री रहे और एक अर्थ में कहें तो उन्होंने भारत का औद्योगिक विकास का मज़बूत शिलान्यास किया था मज़बूत बसे तैयार किया था एक मज़बूत प्लैटफार्म तैयार किया था
1948 में आई स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति उनके आईडीईएएस और विजन्स की छाप लेकर के आई थी
डॉ० मुखर्जी का सपना था भारत हर क्षेत्र में औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर हो कुशल और समृद्ध हो
वे चाहते थे कि भारत बड़े उद्योगों को डेवलप करे और साथ ही MSMEsहथकरघा वस्त्र और कुटीर उद्योग पर भी पूरा ध्यान दे
कुटीर और लघु उद्योगों के समुचित विकास के लिए उन्हें फाइनेंस और आर्गेनाइजेशन सेटअप मिले इसके लिए 1948 से 1950 के बीच अल्ल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड अल्ल इंडिया हैंडलूम बोर्ड और खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की स्थापना की गई थी
डॉ० मुखर्जी का भारत के रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण पर भी विशेष ज़ोर था
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री सिंदरी का खाद कारखाना और दामोदर घाटी निगम ये चार सबसे सफ़ल और बड़े projectsऔर दूसरे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की स्थापना में डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान था
पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर वे काफ़ी पैशनेट थे
उनकी समझ विवेक और सक्रियता का ही परिणाम है कि बंगाल का एक हिस्सा बचाया जा सका और वह आज भी भारत का हिस्सा है
डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी भारत की अखंडता और एकता और इसी के लिए 52 साल की कम उम्र में हीउन्होंने अपनी जान भी गवानी पड़ी
आइये हम हमेशा डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एकता के सन्देश को याद रखें सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ भारत की प्रगति के लिए जीजान से जुटे रहें
मेरे प्यारे देशवासियो पिछले कुछ सप्ताह में मुझे वीडियो कॉल के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करने का अवसर मिला
फाइलों से परे जाकर लोगों की लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में सीधा उन्हीं से जानने का अवसर मिला
लोगों ने अपने संकल्प अपने सुखदुःख अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया
मैं मानता हूँ कि मेरे लिए यह महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था बल्कि यह एक अलग तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस था और इस दौरान लोगों के चेहरे पर जो खुशियाँ देखने को मिली उससे बड़ा संतोष का पल किसी की भी ज़िन्दगी में क्या हो सकता है जब एक सामान्य मानवीमानव की कहानियाँ सुनता था
उनके भोलेभाले शब्द अपने अनुभव की कथा वो जो कह रहे थे दिल को छू जाती थी
दूरसुदूर गांवों में बेटियाँ कॉमन सर्वाइस सेंटर के माध्यम से गांवों के बुज़ुर्गों की पेंशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक की सेवाएँ उपलब्ध करवा रही हैं
जब छत्तीसगढ़ की कोई बहन सीताफल को कलेक्ट कर उसकी आइसक्रीम बनाकर व्यवसाय करती हो
झारखंड में अंजन प्रकाश की तरह देश के लाखों युवाजन औषधि केंद्र चलाने के साथसाथ आसपास के गावों में जाकर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हों
वहीं पश्चिम बंगाल का कोई नौजवान दोतीन साल पहले नौकरी ढूंढ रहा हो और अब वह केवल अपना सफल व्यवसाय कर रहा है इतना ही नहीं दसपंद्रह लोगों को और नौकरी भी दे रहा है
इधर तमिलनाडु पंजाब गोवा के स्कूल के छात्र अपनी छोटी उम्र में स्कूल की टिंकरिंग लैब में वास्ते मैनेजमेंट जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर काम कर रहे हों
न जाने कितनीकितनी कहानियाँ थी
देश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ लोगों को अपनी सफलता की बात कहनी न हो
मुझे खुशी इस बात की है इस पूरे कार्यक्रम में सरकार की सफलता से ज़्यादा सामान्य मानवी मानव की सफलता की बातें देश की शक्ति नए भारत के सपनों की शक्ति नए भारत के संकल्प की शक्ति इसे मैं अनुभव कर रहा था
समाज में कुछ लोग होते हैं
वह जब तक निराशा की बातें न करें हताशा की बातें न करें अविश्वास पैदा करने का प्रयास न करें जोड़ने के बजाय तोड़ने के रास्ते न खोजें तब तक उनको चैन नहीं होता है
ऐसे वातावरण में सामान्य मानवी मानव जब नई आशा नया उमंग और अपने जीवन में घटी घटनाओं की बात लेकर के आता है तो वह सरकार का श्रेय नहीं होता
दूरसुदूर एक छोटे से गाँव की छोटी सी बालिका की घटना भी सवासौ करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा बन जाती है
मेरे लिए टेक्नोलॉजी की मदद से वीडियो ब्रिज के माध्यम से लाभार्थियों के साथ समय बिताने का एक पल बहुत ही सुखद बहुत ही प्रेरक रहा है और इससे कार्य करने का संतोष तो मिलता ही है लेकिन और अधिक कार्य करने का उत्साह भी मिलता है
ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति के लिए ज़िन्दगी खपाने का एक और नया आनंद एक और नया उत्साह एक और नई प्रेरणा प्राप्त होती है
मैं देशवासियों का बहुत आभारी हूँ
4040 5050लाख लोग इस वीडियो ब्रिज के कार्यक्रम में जुड़े और मुझे नई ताक़त देने का काम आपने किया
मैं फिर एक बार आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो मैं हमेशा अनुभव करता हूँ अगर हम हमारे आसपास देखें तो कहींनकहीं कुछनकुछ अच्छा होता है
अच्छा करने वाले लोग होते हैं
अच्छाई की सुगंध हम भी अनुभव कर सकते हैं
पिछले दिनों एक बात मेरे ध्यान में आई और यह बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन है
इसमें एक तरफ़ जहाँ प्रोफेशनल्स और इंजिनियर्स हैं वहीं दूसरी तरफ खेत में काम करने वाले खेती से जुड़े हमारे किसान भाईबहन हैं
अब आप सोच रहें होंगे कि यह तो दो बिल्कुल अलगअलग व्यवसाय हैं इनका क्या संबंध लेकिन ऐसा है बेंगलुरु में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स इत इंजिनियर्स साथ आये
उन्होंने मिलकर के एक सहज समृद्धि ट्रस्ट बनाया है और उन्होंने किसानों की आय दोगुनी हो इसके लिए इस ट्रस्ट को एक्टिवेट किया
किसानों से जुड़ते गए योजनाएँ बनाते गए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सफल प्रयास करते रहे
खेती के नए गुण सिखाने के साथसाथ जैविक खेती कैसे की जाए खेतों में एक फसल के साथसाथ और भी फसल कैसे उगाई जाए ये ट्रस्ट के द्वारा इन प्रोफेशनल इंजिनियर technocratकेद्वाराकिसानों को ट्रेनिंग दी जाने लगी
पहले जो किसान अपने खेतों में एक ही फसल पर निर्भर हुआ करते थे
उपज भी अच्छी नहीं होती थी और मुनाफ़ा भी ज़्यादा नहीं होता था
आज वह न केवल सब्जियाँ उगा रहें हैं और बल्कि अपनी सब्जियों की मार्केटिंग भी ट्रस्ट के माध्यम से कर के अच्छे दाम पा रहे हैं
अनाज़ उत्पादन करने वाले किसान भी इससे जुड़ें हुए हैं
एक तरफ फसल के उत्पाद से लेकर के मार्केटिंग तक पूरी चैन में किसानों की एक प्रमुख भूमिका है तो दूसरी तरफ मुनाफ़े में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित उनका हक़ सुनिश्चित करने का प्रयास है
फसल अच्छी हो उसके लिए अच्छी नस्ल की बीजें हों
इसके लिए अलग सीडबैंक बनाया गया है
महिलाएँ इस सीडबैंक का कामकाज देखती हैं
महिलाओं को भी जोड़ा गया है
मैं इन युवाओं को इस अभिनव प्रयोग के लिए बहुतबहुत बधाई देता हूँ और मुझे खुशी है कि प्रोफेशनल्सtechnocrat इंजिनियरिंग की दुनिया से जुड़ेइन नौजवानों ने अपने दायरे से बाहर निकल कर के किसान के साथ जुड़ना गाँव के साथ जुड़ना खेत और खलिहान के साथ जुड़ने का जो रास्ता अपनाया है
मैं फिर एक बार मेरे देश की युवापीढ़ी को उनके इस अभिनव प्रयोगों को कुछ जो शायद मैंने जाना होगा कुछ नहीं जाना होगा कुछ लोगों को पता होगा कुछ पता नहीं होगा लेकिन निरंतर कोटिकोटि लोग कुछनकुछ अच्छा कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुतबहुत शुभकामना हैं
मेरे प्यारे देशवासियोजीएसटी को एक साल पूरा होने वाला है ओने नेशन ओने टैक्स देश के लोगों का सपना था वो आज हक़ीक़त में बदल चुका है
ओने नेशन ओने टैक्स रिफॉर्मइसके लिए अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी को क्रेडिट देनी है तो मैं राज्यों को क्रेडिट देता हूँ
जीएसटी कोआपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है जहाँ सभी राज्यों ने मिलकर देशहित में फ़ैसला लिया और तब जाकर देश में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म लागू हो सका
अब तक जीएसटी Councilकी 27 मीटिंग हुई हैं और हम सब गर्व कर सकते हैं कि भिन्नभिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ बैठते हैं भिन्नभिन्न राज्यों के लोग बैठते हैं अलगअलग प्रायोरिटी वालेराज्य होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी काउंसिल में अब तक जितने भी निर्णय किये गए हैं वे सारे के सारे सर्वसहमति से किये गए हैं
जीएसटी से पहले देश में 17 अलगअलग प्रकार के टैक्स हुआ करते थे लेकिन इस व्यवस्था में अब सिर्फ़ एक ही टैक्स पूरे देश में लागू है
जीएसटी ईमानदारी की जीत है और ईमानदारी का एक उत्सव भी है
पहले देश में काफ़ी बार टैक्स के मामले में इंस्पेक्टरराज की शिकायतें आती रहती थी
जीएसटी मेंइंस्पेक्टर की जगह इत ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ले ली है
रिटर्न से लेकर रिफंड तक सब कुछ ओनलाइन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है
जीएसटी के आने से चेक पोस्ट ख़त्म हो गई और माल सामानों की आवाजाही तेज़ हो गई जिससे न सिर्फ़ समय बच रहा है बल्कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है
जीएसटी शायद दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा
भारत में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म सफ़ल इसलिए हो पाया क्योंकि देश के लोगों ने इसे अपनाया और जनशक्ति के द्वारा ही जीएसटी की सफ़लता सुनिश्चित हो सकी
आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इतना बड़ा रिफॉर्म इतना बड़ा देश इतनी बड़ी जनसंख्या इसको पूर्ण रूप से स्थिर होने में 5 से 7 साल का समय लगता है लेकिन देश के ईमानदार लोगों का उत्साह देश की ईमानदारी का उत्सव जनशक्ति की भागीदारी का नतीज़ा है कि एक साल के भीतरभीतर बहुतेक मात्रा में ये नई कर प्रणाली अपनी जगह बना चुकी है स्थिरता प्राप्त कर चुकी है और आवश्यकता के अनुसार अपनी इनबिल्ट व्यवस्था के द्वारा वो सुधार भी करती रहती है
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफ़लता सवासौ करोड़ देशवासियों ने अर्जित की है
मेरे प्यारे देशवासियो फिर एक बार मन की बात को पूर्ण करते हुए अगले मन की बात का इंतज़ार कर रहा हूँ आपसे मिलने का आपसे बातें करने का
आपको बहुतबहुत शुभकामनाएँ
बहुतबहुत धन्यवाद